उसके हाथ मे वैसे तो पाइप है वहा पर एक आदमी खड़ा है उसने लाल रंग का शर्ट पहना है वे खड़ा है यहां पर जो है पेड़ भी लगे है और बिल्डिगे भी है जो आसमान है वो नीला है।

यहां पर जो चर्च है वहां पर क्रॉस है दो क्रॉस एक क्रॉस जो है वो लाल रंग का एक क्रॉस जो है पर्पल रंग का है अंदर से जो चर्च है वो सफ़ेद रंग का और वहां पर कोई पोस्टर लगा के है और वहां पर कुछ लिखा गया भी हुआ है और नीचे हड्डी रंग की जमीन हैं।

--पेंच ह स्लाइड सा है ओर यहाँ पे जो जुला भी हे ओर यहां कुछ तो है जहा पर बच्चे लोग चढते है वे भी बना हुआ है यहाँ पर और खेलने की कई चीजे है नीचे ज्यादा घास नही हैओर यहाँ पे जो पेड़ लगे है।

यह मैदान सा है कुछ है। यहाँ पर बच्चे खेल रहें हैं। कपड़े भी लोगों ने सूखने के लिए डाले हुए हैं और यहाँ पर जो एक घर सा है सा है वहाँ पर कुछ हाथ धो रहें हैं और कुछ धो रहें हैं मग भी रखा हुआ है एक औरत भी खड़ी हुई है।

उसे तरफ जो है बिल्डिंग है हरे रंग की घास और पेड़ है कोई बच्चे ह --

जो बच्चे है साथ में बच्चे कुछ पढाई कर रहे है और वो भगवान की पढाई कर रहे है अरब्बी की और उन सारे बच्चे नीचे बेठ कर उनकी टेबल है वहा पर बेठ कर पढाई कर रहे है मस्जिद है ये।

यह तीन रास्ते जा रहा है एक सीधा एक दाया और एक बाया रास्ता जा रहा है थोड़े लोग है और उस तरफ जो है कई बिल्डिंगे भी है पेड़ भी है घास भी है।

और वहां पर जो जो है बा-बादल स-सफ़ेद रंग की पेन्ट की गयी है। दरवाजा नीले रंग का है बाजु में पेन्ट नहीं किया गया है सिर्फ ईंटे नजर आ रहे है और वे एक गाय खड़ी है।

यहाँ पर जो गार्डन है जो गार्डन है वे हरे रंग का लाइन से यहाँ पर पौधे लगाए गए हुए है हरे रंग के आजू-बाजू में जो है पेड़ है वे हरे रंग के है।

यहाँ पे ये गार्डन है गार्डन में बीच में यहाँ पर फाउंटेन है और इस की जो बाउंड्री है वैसे पी नीले रंग की है और जो है कई सारे पीले ग्रास है।